ये इंडियन ट्रेन का ऊपर लिखा हुआ है।

लिखा हुआ है दुकान शॉप के आगे --

अं गैलरी और काफी सारा यहां पे गिफ्ट दिख रहा है।

चार पांच बाइक खड़ी है सीढ़ियां बना हुआ है।

जाते हैं। जल्दी सबको अच्छा लगता है।

काफी डेकोरेशन अच्छा लग रहा है रेड कलर का मैट बिछा हुआ है।

ये रात का माहौल है काफी सारी लाइटे हैं बिल्डिंग हैं।

कंडीशन है उम्म लिखा हुआ है और यहां पे आगे फ्रंट पे अं --

लाइट बल्ब जल रहा है कुछ उजाला साफ सुथरा नहीं दिख रहा है।

दुकान टाइप का कुछ दिख रहा है यहां पे बोर्ड लगा हुआ है।